गेट बहुत ही सुन्दर देखने में मिलता है मंदिर की खूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छी कारीगरों के द्वारा बनवाई गई मंदिर है।